जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं हमारे ठीक सामने कुछ लोग खड़े हैं।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं हमारे सामने कुछ लोग खड़े हैं।

कुछ दूर में बोहोत सारे सामान रखे हुए हैं जिनका कलर वाइट है और कुछ दूर में एक गाड़ी भी है।